साइड में जो दीवाल है वो डिजाईन वाली है और व्हाइट कलर की है।

सामने एक बहुत बड़ा खेत है जहाँ कुछ फसलें लगी हुई हैं राइट साइड में भी कुछ फसलें लगी हुई हैं।

और नीचे एक पिंक कलर का खंभे बने हुए हैं और यहाँ दो बाइक्स लगी हुई हैं और यहाँ कुछ एक बड़ा सा पोस्टर लगा है जो रेड कलर का है।